कुछ खाने का सामान सजाया हुआ है वाइट कलर का लाल कलर का।

अह अगल बगल में दो बड़ा बड़ा ये जार भी रखा हुआ है।

हाथ में कुछ मिसाल टाइम मसाल टाइप के लिया हुआ है।

हरा कलर की साड़ी पहनी हुई है।

चार बाइक लगा हुआ है।

एक पीछे पैर एक आगे पैर किया हुआ है। ब्लू कलर का है। फर उसका गुलाबी कलर का है।

फूल माला पहने हुए हैं।

वो लकड़ी से कुछ बना रहे हैं बांध रहे हैं।

बीच में थर्मोकोल पर एक मछली लाल कलर का रखा हुआ है।

ऑरेंज कलर के कुर्सी पर एक आदमीन बैठा हुआ है।

एक जेंट्स ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए हैं।

पर्चे पहने हुए हैं ब्लू कलर के पैंट पहने हुए है।

टेबल टूल लगा हुआ है चेयर लगा हुआ है।

कपडा टंगा हुआ है फ्राक टंगा हुआ है एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें--

इसमें पीला कलर का बॉर्डर बना हुआ--

और फ्रिज भी है।

कुर्ती कुर्ती पहनी है ब्लू कलर का एक पिंक कलर का।

खाना में च्यवनप्राश रखा हुआ है।

उसमें मनी प्लांट लगाया हुआ है।

इसमें दो लकीर लगे हुए दिख रहा है।

ने का सामान नीचे भी रखा हुआ है।

रा कलर का पेंट किया--